जिस पे बड़ा सा लाइट बोर्ड लगा हुआ है।

और सुन्दर दुकान जैसा दिख रहा है मस्त लाइट वाइट लगा हुआ है।

मॉल दुकान जैसा दिख रहा है जिसपे पंखा लगा हुआ है।

और इधर टीपा जैसा बहुत सामान पड़ा हुआ है।

दुकान जैसा दिख रहा है शेर है।

व्हाइट कलर का बॉक्स जैसा दिख रहा है।

जिस पे ऊपर बोर्ड लगा हुआ है।

यहां बहोत बड़ा झूला जैसा दिख रहा है।

या बहोत बड़ा दुकान जैसा दिख रहा है।

जिसपे लोग खड़े हुए हैं इधर सुंदर सुंदर बढ़िया समान लगा हु--

और इधर लोग आ रहे हैं।

बड़ा बड़ा तार खींचा हुआ है पेंट --

पंडित लोग बैठे हुए हैं औरतें लोग बैठे हुए हैं।

पौधा जैसा दिख रहा है सामने एक मकान जैसा दिख रहा है।